यह गाडी पोलो की गाड़ी है जिसका नम्बर बी आर जीरो एक सी आर तीन जीरो दो तीन है।

फ्रूट्स की रेडिया खड़ी हुई है प्रसादों की दुकान है लोग आ जा रहे है।

--के आगे साईकिले खड़ी हुई है कुर्सियाँ डली हुई है साइड में ठंडा के कैंपर रखे हुए है और यहाँ लोगो का अवागमन--

और ये रात का समय है लाइटें जली हुई है। ये जाने के लिए जीने हैं यहाँ पे ।

देवियों के मंदिर में आनने से अपने अर्चना पूजा करने से की उनकी आस्था पूरी होती है इसलिए वो माता की पूजा करते है।